--और यहाँ झंडे देख रहे होंगे रंग-बिरंगे रेड कलर मे और यहा चार मशीने भी हैं।

कित्ती सारी सूजी सूजी मिल जाएंगी आपको चप्पल चाहिए चप्पल मिल जाएगी शर्ट चाहिए शर्ट भी मिल जाएगी और टाइल्स लगे हैं मस्त और पंखा देख रहे हो लाइट भी लगे हैं मस्त।

देखिए कच्चा एक घर बना हुआ है। अच्छा पक्का है लेकिन छपाई नहीं हुई है अभी। और यहां सड़क जा रही है। और एक ओ यहां बकरियां भी है बहुत सारी--

पेट्रोल पम्प देख रहे होंगे दो चार मशीन है और यहां बोर्ड लगा हुआ है पेट्रोल पंप का एक लाइट भी लगी हुई है। बहुत सारी--

होटेल देख रहे होंगे आप कित्ती बड़ी बनी हुई है और कलर पता है जो पीला है और है --

--देख रहे होगे आप ये हवेली टाइप में बनी हुई है।

--और यहाँ खिड़कियां भी देख रहे हैं हम कित्ती सारी हैं और एक पैरोट भी जा रहा है और यहाँ खम्बा लगा हुआ है लाइट का और यहाँ पे आदमी दिख रहे होंगे आप--